एक अररिया महाविद्यालय अररिया है जो की बहुत बड़ा स्कूल है। स्कूल है जो की और जमीन पे हरयाली नजर आ रही है। और ये येलो कलर येलो और वाइट कलर की स्कूल है।

की हुई है कलर और वहाँ पे रेड कलर की बनी हुई है पेड़ के नीचे जो की बहुत खूबसूरत है। बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में।

और इधर भी कुछ सीमेंट की बनी पुल है और ये बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में--

और ये दुकान है कपड़े बहुत ही अच्छे-अछे नजर आ रहे हैइधर कुछ खिलौने मिल रहे है जो वो बहुत ही अच्छे-अच्छे लग रहे है। और ये बहुत अच्छे मार्केट लग रहा है और बहुत ही प्यारा सामान मिल--

रखे हुए है उधर कुछ अ घटा के बना हुआ है।

यह जो है यह का कपड़े की चप्पल की दुकान है जिसमे यहा पे बहोत सारे डब्बे मे चप्पल ये वो है लगे हुये है और वह पे ब्लू कलर की जीन्स लगी हुई है रेड कलर की कुर्ती लगी हुई है।